खड़े होकर लड़की और लड़के प्रेयर करते हैं और इसका नाम है केंद्रीय विद्यालय क्रमांक थ्री और ये बहोत बड़ा ग्राउंड है।

सारा काम होता है और बहुत सा स्टाफ --

उपर मार्केट का एक बोर्ड लगा हैं।

एक लड़का एक लड़की सूरज की तरफ हाथ करके खड़े है और नीचे--

साथ ही इसमें यहां हरे भरे घास भी दिख रही हैं।

एक आश्रम की है यहां पर एक कमरे में दो दो बेड लगे हैं।

घूमने वाली जगह जहां बहोत सारे पहाड़ हैं।

सामने एक सर्विस की है जहां ये गाड़ी --

सफेद रंग की है जो फ्रेम क्रेन लोड करके लेकर जा रही है दूसरी तरफ दीवार के साइकिल खड़ी है।

ये फोटो एक पुरानी हवेली की है।

हाथ में कुछ पकड़ा रही है पीछे सफेद रंग की पेंट हुई है।

यहां पर एक डंबल रखे हुए हैं और लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं।